इधर दो आदमी जो वॉचमैन है वो नजर आ रहे हैं।

आसपास में बहोत सारे पेड़ और झूले नजर आ रहे है।

एक आदमी हरी शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए खड़ा हुआ नजर आ रहा--

यह एक सोलर पैनल की फोटो नजर आ रही है।

ये एक कारखाने की फोटो नजर आ रही है।

इसकी जो बीम है जो ब्लू कलर की नजर आ रही है।

यहां पे लाल नीली और सफेद टी शर्ट दिख रही जो डिस्प्ले में लगाई गई है।

ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट बिल्डिंग की फोटो नजर आ रही है।

यहां पे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पे बहोत सारे टॉयलेट सीट्स और वॉश बेसिन रखे हुए नजर आ रहे हैं।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

एक आदमी पीली शर्ट पहने हुए दुकान के अंदर नजर आ रहा है।

ये एक स्कूल नजर आ रहा है।

इस स्कूल के आगे बहुत सारे नेट नजर आ रही है।

नीचे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

पेट्रोल पंप को येलो लाइट से सजाया गया है।

एक साइकिल में रैपिंग नजर आ रही है।

यहां पे बहोत सारे बुढ्ढे जमीन पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें ही बहोत सारे कंटेनर नज़र आ रहे है।

बहुत सारे आदमी पास में खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

जो फेन्स है उसकी भी ब्लू कलर की नजर आ रही है।

बस नीले कलर की है उसपे राज्य परिवहन लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस जगह को पेड़ के पत्तों और दूसरी चीजों से सजाया गया है।

यहां पे बहोत सारे बच्चों की भीड़ नजर आ रही है।

ये सेलिब्रेशंस दुकान की फोटो नजर आ रही है।

एक बॉटल ग्रीन कलर की साइड में रखी हुई नजर आ रही है।

ये एक मैकेनिक के दुकान की फोटो नजर आ रही है।

यहां पे एक स्कूटी व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

इसका एक आदमी टायर बदलता हुआ नजर आ रहा है।

स्पोर्ट् शॉप की दुकान में एक येलो सेल्फ दिखाई गई है।

पास में ही पानी गिरता हुआ बहता हुआ नजर आ रहा है।

ये एक मिठाई की दुकान नजर आ रही है।

मिठाई की दुकान मे बहोत सारे मिठाइयां नज़र आ रही है।

मुझे बहोत सारे ब्लू कलर के सोफे नजर आ रहे हैं।

उसके आगे बहोत सारी गाड़ी टेंपो पार्क करे हुए है।

यहां पे बोहोत सारी गाड़ियां पार्क करी हुई नजर आ रही हैं।

इस स्ट्रीट में बहोत सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिख रही है।